मुझे यहां एक बिस्तर भी नजर आ रहा है।

मुझे यहां सफेद रंग का वाल भी नजर आ रहा है।

मुझे यहां पेड़ में नजर आ रहा है।

मुझे यहां पीछे पत्ते से बनवाया हुआ घर भी नज़र आ रहा है।

मुझे यह एक इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर जैसा नजर आ रहा है।

मुझे यहां एक गाड़ी नजर आ रहा है।

मुझे यहां ट्रेन के अंदर एक आदमी नजर आ रहा है।

मुझे यहां दरवाजा नजर आ रहा है।

मुझे यहां एक डस्टबीन भी नज़र आ रहा है।

मुझे यहां एक हॉल नजर आ रहा है।

मुझे यहां फूल पौधा भी नजर आ रहा है।

मुझे यहां टीन का छत भी नजर आ रहा है मुझे यहां पीछे एक वॉल भी नजर आ रहा हैं।

मुझे यहां बहुत सारे आदमी नजर आ रहा है।

मुझे यहां एक पंतल नजर आ रहा है।

मुझे यहां पेड़ भी नजर आ रहा है।

जो यहां पीछे में बहुत बड़ा बिल्डिंग भी नजर आ रहा है।

मुझे यहां कंफर्ट भी नजर आ रहा है।

मुझे यहां बहुत सारा चेयर नजर आ रहा है।